गेंद कई रंगों की है इसमें सफेद लाल और संतरी और पीली गेंदे हैं।

उस गेट के बाहर एक ट्रैक्टर खड़ा है।

यह एक गैरेज की दुकान है।

इस घर को बहोत सुंदर सजाया हुआ है।

इसमें बच्चे भी हैं कुछ औरतें भी हैं और कुछ लड़के भी हैं।

अलमारियां हल्के पीले रंग की बनी हुई है।

और कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं सभी ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है।

इसमें एक बहुत बड़ी मशीन दिखाई गई है यह क्रेन और मशीन है।

इसमें एक नदी के ऊपर पुल बन रहा है।

और इसमें एक आदमी ने व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है और एक ने काली पहनी हुई है।

एक चाय के कप में चम्मच है और दूसरे में नहीं है।

इसके बाद इसके ऊपर कुछ पेड़ पौधे है।